ये हम्म बहुत ही सुंदर दृश्य है। अ एक तालाब दिखाया गया है।

ये नेहर की लंबाई बहुत चौड़ाई काफी दिखाई गई है।

ये सरकारी ऑफिस के अंदर कुछ लोग अ जो है। कुछ काम करवाने के लिए के लिए आये हुए हैं। तीन कुर्सियां भी हैं बैठने के लिए तीन बंदे खड़े हैं।

येहे हरिद्वार में जैसे गंगा बहती है ना वैसे दिखाई हुई है नदी बहुत बड़ी नदी है।

ऊपर एक पंखा चल रहा है और एक जो है सिलिंग जो है दूसरा फैन है बोर्ड दिखाया गया है।

ये हैं जी ढलते सूरज ढलता हुआ सूरज दिखाया गया है और --

मैदान के अंदर हरी हरी घास लगी हुई है और जो टाइल्स लगी हुई है बहोत ही सुन्दर डिजाइन की लगी हुई हैऔर बंदा एक खड़ा है।

जो की इंडियन रेलवेस इंडियन रेल का इंजन दिखाया गया है जो पटरी पर खड़े है और--

बनाई गई है नारियल टाइप में और उसके अंदर पेड़-पौधे लगाए गए हैं फूलो के अ पौधे में लगाए गए हैं और काम भी प्रगति पर है।